सामने सामने काउन्टर दिख रहा है जो सफेद कलर का और साइड में गुलदस्ते रखे हुए दिखाई दे रहे है और ऊपर ट्यूबलाइट जलती हुई नजर आ रही है।

ये एक हॉल है जिसमें कुछ दो टेबल और आठ सेट कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है और ऊपर से सीलिंग कुछ सफेद कलर की लाइट जलती हुई नजर आ रही है।

एक बड़ा सा ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है और ग्राउन्ड के अंदर कुछ व्यक्ति वहाँ खड़े हुये और आते जाते दिखाई दे रहे है।